और टीचर्स आके उसको चेक कर रहे हैं।

और लाइटनिंग काफी अच्छी है रूम की बच्चों के लिए और चेयर्स भी न्यू है एकदम।

के नीचे का ये व्यू है नीचे हम मेट्रो स्टेशन भी देख सकते हैं।

और इस लाइब्रेरी में काफी सारी बुकें हम देख सकते हैं शेल्फ वाइज रखी गई है।

इस पिक्चर में हम पोरसे कार देख सकते हैं जो कि काफ़ी महेंगी कार है ये वाइट कलर की है पूरी।

और ये ब काफी पुराना दिखाई दे रहा है।

ये एक नर्सरी की पिक्चर है नर्सरी में काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट है और काफ़ी बड़े साइड के प्लांट भी है और --